यह एक ऐसा दिखाई दे रहा है देखने से लग रहा है कि यहाँ पर सोत की पानी भी बह रही है।

और यहाँ पर काफी ही अच्छा से सोत भी बह रहा है जो कि देखने में काफी अच्छा है।

यहाँ पर देखने से लग रहा है कि किसी देवता या किसी देवी का दृश्य है।

यहां पर लिखा हुआ है जो कि देखने से लग रहा है कि यहां पर राशन घर है।

यहाँ पर देखने से लग रहा है कि यहाँ पर कुछ हुआ है।

और पुलिस भी यहाँ पर आए हुए नजर आ रहे हैं।

जो कि बॉडी वॉडी बनाया जा रहा है।